पुल बने हुए एक रेल्वे ब्रिज सा दिख रहा और एक नॉर्मल ब्रिज --

और पानी का कलर भी देख रहे होंगे ब्लैक --